यहां सेब अमरूद और चीकू केला संतरे पपीता--

कस्टमर का सामान मिलता--

यह बहोत सुंदर घर दिखाई--

काला काला सा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहोत सारे आदमी कुर्सियों पे बैठे हैं और लाइटे भी कसी हुई है।

और मोटर साइकल सकुटरी बहोत ज्यादा भीड़ हो रही है।

दे रहें हैं और गाड़ियाँ भीं खड़ी हैं पार्किंग में--

बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां सभी दूर दूर से दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहोत बड़ा सुंदर पारक दिखाई दे रहा है।

और यह अह फ्लैट सा भी नजर--

सुंदर हैं लाइटें भीं ससी हुई हैं।

बड़ा प्यारा प्यारा नीला भी दिखाई--

बहुत सुंदर सुंदर दुकान दिखाई दे रही है उधर कपड़ों की सब तरह के दुकान बाजार है बहुत अच्छा लग रहा--

यह बहोत सुंदर सुंदर दुकान दिखाई दे री हैं।

बहोत सारी कुर्सी मेज भी बिछी हुई हैं।

ओ ए_सी भी लगा हुआ है।